जहां पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और एक का पर्दा टाइप में लगा--

कार खड़ी हुई है और वाइट कलर से नीचे कुछ पेंट है यहां पे पेड़ पौधे भी हैं बहुत सुंदर दिखाई--

है और यहां पे कुछ मकान तैयार हो चुके हैं यहां पे अच्छा दिख रहा है यहां पे--

ये एक कपड़े की शॉप है जो आदि ओपन है और आ--